और एक झंडा दिखाई दे रहा हैं झंडे का रंग --

क्रीम पौडर फ़ाउंडेशान चश्ट बोतले दिखाई दे रही हैं तरह तरह बैनर लगा हुआ है और एक साईकिल जिसमे झोला टँगा हुआ दिखाई दे रहा है।

गेट के बाहर में ठीक एक कार पार्क है जो सफेद रंग का है एक बाइक है एक स्कूटी है कुछ हरे भड़े पेर पौधे दिख रहे हैं।

यह एक हिल एरिया है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ --

एक आदमी हरा स्वेटर और मुँह में काले रंग का मास्क लगाया है और एक आदमी लाल शर्ट और पैंट पहने --

हैडफोन कान में लगा कर एक बोतल रखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक दुर्गा माँ का मूरत दिख रहा है।

बैंगनी कलर के सफेद हरे कपड़े पहने हुए है और एक टीचर दिखाई दे रही हैं।

भूरे रंग की सूट पहनी हुई हैं और कुछ छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बड़ी-बड़ी घर और एक लाइन का पोल दिखाई दे रहा है।

चारपाई दिखाई दे रहा है जिसका सूता नीले रंग का है और एक आदमी का--

दे रही हैं एक सोलर पैनल भी लगा हुआ हैं कुछ फूल भी दिखाई दे रही हैं।

एक स्टेज बना है और जहाँ पर सीढ़ीया कुछ दिख रही है।

दिखाई दे रहा है और बहुत सारी लाइने लोहे बड़ी-बड़ी मशीनें दिखाई दे रही है।

और एक स्कूटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ नीले रंग का डस्ट्बिन लिए हुए है।

यह एक किराना का दुकान है जहाँ पे बहुत सारी सामानें मिलती है जैसे चिप्स कुरकुरे मैगी --

यह एक बहुत ही बड़ा क्लासरूम दिखाई दे रहा है और सफेद रंग का बहुत ही बड़ा बोर्ड --

और एक ऐ-सी दिखाई दे रहा है और एक पंखा लगा हुआ--

मग के यानि अंदर एक छोटा सा कटोरा रखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक पानी का भी बोटल भी दिख रहा है।

है नजर आ रहा है जो काले रंग का है और घर में लाइन के तार दिखाई दे रही हैं और एक काले रंग का गेट भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत ही बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर जगह-जगह पे बालू रखी हुई दिखाई दे रही है और एक चारपाई भी रखा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे घर हैं बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं जिसका रंग हरे और लाल रंग में है।

और वाहा ऊपर में बहोत सारे पाहाड़ --

यह एक घर दिखाई दे रहां है जो सफेद रंग का है।

यह एक खेत दिखाई दे रहां है जो दूर दूर तक फैला हुआ है।

और यहाँ बहोत बड़े बड़े भी पेड़ दिखाई दे रहे है हरे-भरे--

और कुछ आदमी भी दिखाई दे रही हैं और सीढ़ियाँ नजर--

भगवान की बहो सारी मूर्ति जैसे शंकर भगवान जी--

और एक शेर दिखाई दे रा है और मोर पंख भी दिखाई दे रही है।

बैठी हुई है और एक लड़का जो हाथ में पेन लिए गुलाबी रंग का शर्ट पहने हुए बैठा है कुछ आदमी बैठे हुए पगड़ी पहने हुए--

यह एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर बैठने की बहोत सारी जगह बनी हुई जिसका रंग पीला लाल हरा--

यह एक मंदिल है जहां काले रंग के बोर्ड पे सफेद रंग में लिखा है।

यह एक रूम है जहाँ पर एक काले रंग का बेड दिखाई दे रहां है उस पर बेड शिट--

वे गुलाब के फुल बने हुए है दिखाई दे रही हैं।

एक चप्पल जो भूरे रंग कि है दिखाई दे रही है और किनारे में एक चेयर दिखाई दे रहा है।

इस लाल रंग का साड़ी पहने पूजा कर रही है माता ने मुकुट पहना हुआ है और गले में गेलरी का सूट लटकाया हुआ दिख रहा है शनि देव भी मुकुट पहने दिख रहे है।

और एक लाल रंग का चेयर दिखाई दे रहा हे बहोत बड़ी-बड़ी मशीनें जो हरे रंग में है दिखाई दे रही हैं।

बहोत बड़े बड़े पेर और झाडिया नजर आ रही है और मिट्टी जो एकदम गंदी दिखाई दे रही है।

कुछ बड़े बोधे भी दिखाई दे रही है है छोटे-छोटे फूल के पोधे साग के पोधे--

ग्रीन तार बनी है झालियाँ दिखाई दे रही है।

पट्टी बांधे खड़ा है और एक बाइक दिखाई दे रही है कुछ ईंटें और कुछ गमलों में छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे है।

और एक टेबल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा हे कुछ साइकिल दिख रहे हैं।

पानी में सूरज की रोशनी भी आ रही है पानी झिल मिलाते हुए काले रंग की दिख रही है।

यह एक शादि का मंडप बना हुआ है जहाँ पर बहोत सारे टेबल चेयर --

रखी हुई दिखाई दे रही है चेयर का रंग सफेद है टेबल लाल रंग में दिखाई दे रहा है ।